गार्डेन में बहुत सारे पेड़ पौधें है।

इस फोटो में एक लड़की के बाल खा काटे जा रहे हैं।

औरत ने चस्मा पहना हुआ है।

प्लास्टिक के अंदर कुछ हरी मिर्ची भी है।

इस फोटो में एक बच्चा एक कुर्ता पहना हुआ है।

एक पेड़ है जिसके बहुत सारे पत्ते हैं।

इस फोटो में बहोत सारे घर भी है।

सामने एक सड़क भी है।

दुकान में कुछ वॉशिंग मशीन भी बेची जा रही है।

काउंटर टेबल पर टूथ पिक भी रखी गई है।

लटकती हुई दिखाई दे रही है।

ये फोटो एक रिसोर्ट का फोटो है।

स्विमिंग पूल के चारों ओर एक पक्की रोड है।

यह एक नदी के किनारे का फोटो है।

बाकी तीन बोट खाली है।

ये एक शॉपिंग मॉल की फोटो है।